सजाया हुआ है यहां पेड़ों पर भी लाइटिंग की हुई है।

और यहां झूमर लटकाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

शॉप पर डेरी प्रोडक्ट के अलावा दूसरे प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहे हैं।